और ऑटोरिक्शा भी है। --

सामने बिल्डिंग है और पिली मिट्टी भी है।--

छत के ऊपर टेबल पुर्जा ऐसे लगाए हुए है।

कुण्डी में पेड़ पौधे भी है।--

लाइट्स है और छोटे-छोटे बॉक्स बनी--

रोड है और रोड के बाजू में--

और ब्लॉक बैठे हुए है।

कलर के टोमेटो दिख रहे है।